फंक्शन में ऐसी दिवाली के फंक्शन में से लग रहा है जैसे दिवाली के फंक्शन में मोमबत्तियां लगा रखी है बहोत सारी दूर दूर तक लगी हुई हैं ये बीच में बहोत सारी लगी हुई हैं छोटी छोटी दिख रही है।